ये मंदिर है मंदिर में भगवान अभी अंदर में है। दिखाई नही देते है। यह सीता राम होंगे। या राधे श्याम होंगे या शंकर भगवान उमा शंकर होंगे।

ये एक पीपल का पेड़ है।

और यहाँ बहुत अच्छा से सब अपना सज कर जाते है।